जिनमें बोहोत सारी प्रकार की वस्तुएं आप देख ही सकते है कि कितनी सारी वस्तुएं है।

यहां सामने की आप ओर देख सकते हैं एक एस_बी_आई ए_टी_एम भी दिखाई दे रहा है जीसमें--

दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे सामान एवं दीवार पर कुछ चिपकाए गया है इसमें वॉलपेपर दिख रहा है सामने की और आप देख सक--

वॉलपेपर कितना प्यारा लग रहा है ब्लू कलर के--

इसके लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस थैंक यू धन्यवाद।

जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फेन बी चल रहा है यहां पे और--

पहाड़ी च का एक दृश्य आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और इनो--

आप देख सकते हैं हवा में उड़ने का अलग ही मजा आता है जहां पे आप हरियाली वगैरह सब कुछ देखते--

बहुत सारी भीड़ दिख रही है सामने जो है मवाजन अस्पताल के सामने कितनी प्यारी भीड़ बढ़ रही है भीड़ में बहुत सारे बच्चे इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत ही घटिया काम चल रहा है मच्छि भी नही कट पा रही है उन लोगो से अब क्या हो पाये--

पेड़ है बहुत अच्छा जंगल दिखाई दे रहा है जहां पे सुबह सुबह ये सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

पी_वी_सी पाइप रस्सी पाइप इसपे उसपे सब पास आदि ही विक्रेता के सामान हैं।

सामने की ओर आप देख सकते हैं की कटिंग वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है इसमें कटिंग की जा रही है गाइज़ --

में कंप्यूटर मशीन का काम करने का तरीका थोड़ा ही अलग रहता है कंप्यूटर चलाने में आपको बहुत बहुत--

घर वगैरा एवं लाइटें दिखाई दे रही है जिसमें अलग अलग लाइटिंग वगैरा लगाई गई है सामने एक ब्लू कलर की गाड़ी भी खड़ी--

सामने की और आप देख सकते हैं कि हमें--

इसमें दिखाइ दे रहा है कि विज्ञान बुक सेंटर ।

क्या कुछ मतलब ऐसा टायर वगैरह की गाड़ी दिखाई दे रही है कोई बोलेरो पड़ी है।